काफी सारे बिल्डिंगे मकान भी देख रहें --

काफी सारे गुब्बारे और लाइटें भी लगी हुई --

साइड में लोग भी खड़े हुए--

जिसके बाहर लाल कलर का बोर्ड भी लगा हुआ।

साइड में नीले कलर का एक बड़ा डब्बा रखा हुआ--

इसमें एक दीवार के ऊपर लाल कलर का बोर्ड --

इसमें एक बड़ी सी सफेद कलर की बिल्डिंग दिख रही --

सामने बड़ी सी पहाड़ी भी बनी हुई दिख रही।

और एक बच्चों का झूला बना हुआ दिख रहा --